कुर्सी के नेट फ्रॉम मुर्गा मसाला यहाँ पे चिकन बहोत सारा समान मिलता होगा ।

ये तस्वीर को देख के लग रहा है की यह कोई बड़ा-सा होटल है यहाँ पे सी नगर यहां पे फैमिली डिनर किया जाता होगा होटल जो की यह बहुत ही सुन्दर कराया गया है बहुत ही --